इस चित्र में एक गौशाला को दर्शाया गया है जहां पर भिन्न-भिन्न प्रकार की गाय बांधी हुई हैं और ऊपर--

इनके पतरे भी रखे गए हैं इधर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और वहां पर एक सीढ़ी भी लगी हुई है।

और वहां पर लाइट के तार भी लगे हुए हैं और खंबे भी हैं और इधर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है और सड़क पर कुछ व्यक्ति आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक म्यूजिक हॉल को दर्शाया गया है जहां पर कुछ लड़कियां डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं और वहां पर एक पंखा भी लगा हुआ है।

और नीचे फर्श लगी हुई है और वहां पर टाड़े भी हैं और उधर कुछ दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।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

इस चित्र में भिन्न-भिन्न प्रकार के लाइट के उपकरण रखे गए हैं जिसमें से कुछ लाइट के पंखे हैं और इधर--

और प्लेट के ऊपर एक केले का पत्ता भी रखा गया है और उधर दो गिलास भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक भीमार्ट का चित्र है जहां पर भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान रखे गए हैं जिसमें से मैं ये--

ये एक बिल्डिंग का चित्र है जो कि लाल कलर से और सफेद कलर से पेंट किया गया है और बिल्डिंग के बाहर एक बाउंड्री भी--

ये कॉलोनी का चित्र है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की गाड़ी दिखाई दे रही हैं और वहां पर ऊपर कु --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

इस चित्र में एक ऑफिस को दर्शाया गया है जिसमें ए_सी लगी हुई है और कुछ कबर्ड भी--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

कलर मेट है और यहां पर दो मोटरसाइकल भी खड़ी हुई हैं और जो कि रोड पर है और मोटरसाइकिल के पीछे एक--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

यंत्र सामान रखे गए हैं और यहां पर एक झोले टाइप का कुछ बना हुआ है जिसमें कुछ जंजीर का लटका हुआ है।

और यहां पर कुछ गाड़ी भी खड़ी हुई है शॉप के अंदर भी भिन्न-भिन्न प्रकार के सामान रखे गए हैं।

इस क्षेत्र में एक हॉल को दर्शाया गया है जिसमें एक पंखा लगा हुआ है और एक लेडी टी_वी लगी हुई है।

के नीचे एक मेज भी रखी गई है और वहां पर एक दरवाजा भी लगा हुआ है।

देख रहे हैं और यह एक तालाब भी है और यहां पर कुछ--

जो कि दशहरे के दिन आयोजित होता है और यहां पर बहुत से व्यक्ति देखने के लिए आ ए हुए हैं और उसके पीछे कुछ--

इस चित्र में एक ऑफिस को दर्शाया गया है जिसमें एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक मेजर --

इस चित्र में एक टायर की दुकान को दर्शाया गया है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के टायर का लाइन में--

यह एक प्राकृतिक सौंदर्य चित्र है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के पहाड़ों को दर्शाया गया है जो कि--

हरे भरे पेड़-पौधे से एकदम भरे हुए हैं और यह देखने में बहुत अद्भुत लग रहा है नीचे भी कुछ--

के बाइक के उपकरण रखे गए हैं और यहां पर एक बुलेट भी खड़ी हुई है जो कि रिपेयर करने के लिए आई हुई है और इधर एक टंकी भी रखी गई है।

और नीचे कुछ रिंच भी रखे गए हैं और उधर भी एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसके बगल में कुछ अलग प्रकार--

इस चित्र में एक बहुत सा बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और इधर एक ट्रैक्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

और इधर एक पेप्सी भी रखी गई है और उधर कुछ--

अन्य प्रकार की दुकान भी है और यहां पर कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है और वहां पर दोव्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और वहां पर कुछ बुक भी रखी गई हैं और इधर कुछ--

बॉक्स में अन्य प्रकार के सामान भी रखे गए हैं और वहां पर नीचे भी कुछ सामान रखे गए हैं।

इस चित्र में कुछ झूले दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक कुर्सी और उसके सामने एक मेज रखी गई है और ऊपर कुछ पंख लगें गए हुए हैं।

कोई प्रयोग कर रहे हैं कुछ व्यक्ति कोई भिन्न-भिन्न प्रकार की आकृत का--

गुलदस्ता टाइप का कुछ बना रहे हैं और उनके पीछे कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है।

और यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के खाने बने हुए हैं जिसमें सामान भरे गए हैं।

रैकों में रखे गए हैं और कुछ कपड़े टांगे गए हैं और वहां पर एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है इधर बोरे में भी कुछ कपड़े रखे गए हैं।

वहां पर हैंगर में भी कुछ कपड़े लटकाए गए हैं।

उसके बगल में भी कुछ अन्य प्रकार के परफ्यूम भी रखे गए हैं बाहर एक चार चक्का भी दिखाई दे रही है।

फलों की दुकान दिखाई दे रही है यहां सड़क पर दो व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सी गाड़ी--

और यहां पर सामने एक लाइट भी लगा हुआ है जो कि एक पोल से जुड़ जुड़ा हुआ है।

और वहां पर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है व्यक्ति के बगल में कुछ मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई हैं और यहां पर गमले में कुछ फूल भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक दुकान को दर्शाया गया है जिसके सामने कुछ कुर्सी रखी गई हैं और वहां पर एक मेज रखा गया है मेज पर कुछ सामान रखे हुए हैं।

और यहां पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ है और वहां पर एक टी_वी भी लगी हुई है।

जो कि देखने में बहुत अद्भुत लग रहे हैं और पीछे कुछ कॉलोनी भी बनी हुई है और जो कि देखने में बहुत अत्यधिक अद्भुत लग रहा है।

और पहाड़ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगे हुए हैं और नीचे भी पानी दिखाई दे रहा है और यहां पर भी कुछ--

छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में एक मॉल को दर्शाया गया है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के कपड़े रखे गए हैं यहां पर कुछ ठंडी के कपड़े रखे गए हैं और कुछ--

और वहां पर कुछ तकिया भी रखी गई हैं और उसके बगल में एक लैंप भी जल रहा है।

उसके बगल एक सोफा भी रखा गया है सोफे के आगे एक मेज भी रखी हुई है और उधर पीछे--

। ये एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जहां पर भिन्न-भिन्न प्रकार की फ्रिज रखी गई हैं

मिक्सर मशीन भी रखी गई है और इधर भी कुछ मिक्सर मशीन रखी हुई हैं और इधर भी कुछ फ्रिज रखी गई हैं।